बल्कि इस दिन इस पहाड़ियों के बीच एक झरने है जो देखने में बहुत ही खुबसूरत लगते है यहाँ के नजारा देखने में बहुत ही खुबसूरत है म्म आसपास में पेड़ पोधे भी --

स्लीपर के पीछे अच्छा काम दे रही है।

यह गेदा का फूल है गेदे का फूल है कई तरह के माला डेकोरेशन कई भी सजाए सकते है मंदिर भी सजा सकते है भगवान को चढ़ाए जाता है यह फूल काफ़ी सुन्दर दिख रहा है। .